ब्लैक दिख ब्लैक सी कुछ काले काले दिख रहे है और उस उस जगह पे कई प्रकार का पैंट डला हुआ दिखाई दे रहा है अच्छा लग रहा है और फिर मेल भी दिखा रहा है कुछ ब्लैक कलर कि चप्पल पेहेन ली रेड कलर का शर्ट पेहेन लि नीली कलर कि कुछ हाफ हाफ पैन्ट लोअर पहने दिखाई दे --